इनाम दिया जा रहा है जो की --

का नाम श्री हिंग लाज बुक डिपो है।

यह फोटो किसी पेटरोल पंप की--

कमरे की दिखाई दे रही--

का नाम डू नॉट साईं वे गॉर्जियस के नाम से--

कैफे की फोटो दिखाई गई है जिस--

यह फोटो एक सेंटर के दिखाएं दे रही--

फोटो में जिम की फोटो दिखाई--

इस जिम में बहुत --

इस फोटो में एक कमरे की फोटो लगी हुई--

के फोटो में दिखाई गई--